और सभी आदमी फूल तोड़ रहले बहुत ऐसा आदमी है ।

आर पीछे घर हेय पहाड़ हेय और बहुत पहाड़ --

और कत्ते सूंदर हेय और गाछ लगल हेय।

और जो सुंदर रह गए हैं और घर हैं बहुत सारे घर हैं लगता है एक सौ --